यह चित्र किसी चर्च के बाहर का है जोकि रोड पर एक पादरी साहब जा रहे हैं।

गुफा के अंदर एक लड़का जा रहा है और पीछे से एक लड़का उसकी फ़ोटो को खिच रहा है।

कुछ लोग कुछ बच्चे कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। सामने कुछ पेड़ भी दिखाए गए है।

शादी समारोह का है जो कि सामने शादी समारोह का गेट दिखाया गया है।

यह चित्र किसी किराने वाले दुकान का दिखाई दे रहा है जो की सामने एक फ्रिज पड़ा है ओर किराने की दुकान मे बहुत सारा किराने का सामान पड़ा है जो की सामने दिखाई दे रहा है|

ये पिक्चर किसी मछली बेचने वाले का है जो की हाथ मे बोहोत बड़ी मछली ले रही है।

साथ में कुछ कूड़ा-कचरा भी साइड में पड़ा हुआ है और नीचे छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं।